काउंटर के ऊपर एक बॉटल और कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक डस्टबिन रखा हुआ है ऊपर की ओर एक ब्लू कलर का बैनर है जिस पर वाइट कलर से मुगल स्टोर लिखा हुआ है।

हड्डियों के ऑक्सीजन लगा हुआ है पीछे की ओर एक खिड़की है जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक मैट बिछी हुई है।

मैट पर एक ट्रे ब्लैक कलर की रखी हुई दिख रही है जिसमें कुछ स्प्रिंग रोल पड़े हैं।

मेयोनिज पड़ी हुई है साइड में सॉस रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ऊपर की ओर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

जो कि लाइटों हुआ है। सामने की ओर बहोत से पौधे रखे हुए दिख रहे हैं।

जिसमे सामने की ओर छोटा इमामबाड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की दिखाई दे रही है।

में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने हाथ में एक ब्लैक कलर की बुक लिया है।

एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिस पर वाइट कलर से कैपिटल लेटर में--

ये सामने एक रेड कलर का बैटरी रिक्शा खड़ा हुआ है।

घर के ऊपर क्रिश्चियन का साइन बना हुआ दिख रहा है।

बहोत से लोग इधर उधर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की ओर कुछ बोर्ड्स लगे हैं और बहोत से लाइटें जल रही हैं।

यह पिक्चर एक मैरिज हॉल की दिखाई दे रही है।

सामने की ओर एक रोड बनी हुई है।

कुछ लोग बाहर की ओर खड़े हुए हैं।

यह पिक्चर एक जिम की दिखाई दे रही है।